फ्रिज में जम जाता है ।

एक फसल हम लोग फसल उगाते हैं खेती करते हैं तरह-तरह की तरह-तरह कि खेती करते हैं और फ़सले उगाते हैं।